और दो कुर्सी भी हैं जो कि बहुत ही आरामदायक हैं।

यह एक स्वीट्स की दुकान का फोटो है।

बहुत सारे मोबाइल्स भी रखे हुए हैं।

स्प्राइट और बिसलेरी के पानी का बोतल भी दिखाई दे रहा है।

उसमें बहुत सारे दुकान नजर आ रहे हैं।

गेट के बाहर एक डस्टबिन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे लोग ढोल बजाते हुए दिख रहे है।

घर के बगल में एक नया घर बन रहा है।

बहोत सारी खाने की चीजें और रोजमर्रा की जरूरत की सामनें हैं।

इसमें कुछ लोग ऑटो से मार्बल को अनलोड कर रहे हैं बारिश भी हो रही है।

गेट के ऊपर शुभ लाभ लिखा हुआ है।

उसके आगे उसका ड्राइवर खड़ा हुआ है।